इसमें सेम सैलून वाले की बहोत सारी एडवेटाईजमेंट होती है।

छत डालने से पहने मकान बनाये नीचे का बीम डाला जाता है और ये कारीगर मजदुर जो है अपनी छत डाल रहे हैं।

यहाँ पे लोग घूमने आते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं फोटो क्लिक करवाते हैं ये एक अच्छा वि --

चाँदनी ऑटो पार्ट्स की दुकान है यहाँ पर गाड़िये सर्विस की जाती है काफी अच्छा व्यू --